यहाँ पर एक पार्क है और उस पार्क में एक मूर्ति रखी हुई है। घोड़े पर बैठी हुई है।

चल रहा है। बहोत लोहे का सामान डाला हुआ है।

टॉयलेट वाशरूम है जिसमें बहोत बड़ी - बड़ी बहोत छा --

मम्म कुछ मीनार है। इस क़ुतुब मीनार जैसी लग रही हैपर सफ़ेद कलर की।